सारे ऊपर में प्लास्टिक भी--

पार्क का दृश्य लग रहा जिसका नाम हैं इंद्रा बिहार प्रगति का विभाग--

यह एक मॉल का दृश्य लग रहा हैं जहाँ पे काफी सारे लाइटे लगी हुई हैं ।

यहाँ पे दो घर का दृश्य दिखाई दे रहा हैं जोकी एक--

वो देखो फोर व्हीलर भी खड़ा हैं।

यह एक कपड़ा का दुकान हैं।

यहाँ से एक ऑटो पार हो रही हैं और यह एक ब्रिज हैं।

जहां पे काफी सारी लाइटे लगी हुई हैं।

और उसी के बगल में एक--